और कुछ फूलों की माला भी यहाँ पर रखी हुई दिखाई दे रही हैं ।

जिसने अपने फेस पर मार्क्स लगाया हुआ हैं ।

पीले रंग का सूरज भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर वाइट कलर की लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं ।

कुछ लोग पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

यहां पर एक बड़ा सा चैनल गेट भी दिखाई दे रही है जो की ब्लैक रंग का है और कुछ बाउंड्री भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बड़ा- सा ब्रिज दिखाई दे रहा है और ब्रिज से बहुत तेजी से वाइट कलर का पानी बह रहा है ।

हवेली दिखाई दे रही है ओर एक नीले रंग का ओर वाइट रंग का आसमान दिखाई दे रहा हैं ।